बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

छत पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारी चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है।

और ग्राउंड भी दिखाई दे रही है।

यहां पर छत दिखाई दे रही है।